काफी अच्छा पीला लाल नीले रंग के गुब्बारे हैं और बहोत ही अच्छा यहाँ का अनुभव है।

आसमान साफ है और रास्ता भी साफ है।

आराधना करने के लिए आते हैं और हर जगह शांति फैलाई होई है।

उप्पर से लाइटें दिख रहीं हैं और खाने की गोरे गोरे बर्तन दिख रहे है।

ये एयरपोर्ट का एक हिस्सा है जहाँ पे कई सारी आकर्षित चीज़ें हैं एक आदमी--

इस चित्र मे एयरपोर्ट के अंदर का जो है स्थल वो दिखा रहें हैं और यहाँ पे दो--

लोग खड़े हैं और दो लोग उधर स चहेरा दिखा रहें हैं सारे लोगो ने मास्क लगाया हुआ है कहीती साफ सुतरा है।